इस सीन पर देखिए अंदर हमें बड़ा सारा मच्छी का बाजार दिख रहा है यहा पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे मछलियां दिख रही है।

साथ में पीले रंग की पनिया दिखाई दे रही है दो व्यक्ति और एक औरत खड़ी हुई है जो कि साड़ी पहनी हुई है लड़के ने लाल कलर की शर्ट पहनी हुई है सामने एक दीवर भी सफेद रंग की दिखाई दे रही ह।

इस सीट में हमें बहुत सारे पत्ते के बने गमले दिखाई दे रहे हैं इस स्टेबल में कुछ काले रंग के डिब्बों में गमले दिखाई दे रहे हैं।

यहा पर हरा रंग के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं बड़े झाड़ियों की पत्तियां दिखाई दे रही है और सफेद रंग का दिखाई दे रहा है।

सामने बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं जो हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं आसमान का रंग सफेद और हल्का काला दिखाई दे रहा है और बिजली के तार जाते हुए दिखाई दे रहे है।

ग्राउन्ड दिख रहा है जिस पर बड़े-बड़े हरे-हरे कलर के घास दिखाई दे रहे हैं और हमें एक सफेद रंग का रास्ता भी दिखाई दे रहा है।

इसके अंदर हम एक पुराना खड्डा नजर आ रहा है जो पहाड़ के बीच में से जाता हुआ अंडर दिख रहा है जिसके दो बड़े रास्ते दिख रहा है जो सफेद काले रंग के दिखाई दे रहे है।

इसके अंदर हमें भवन दिखा रहा है जो काफी ऊंचा दिखाई दे रहा है इसके ऊपर सफेद और लाल रंग की पट्टी से कलर किया गया।

काले सफेद गहरे रंग के दिखाई दे रहे हैं पहाड़ अभी लंबे और उचे भी दिख रहे हैं बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है जिसको देखकर लग रहा है।

काले रंग के फ़्लोएर पहाड़ काफी उज्जैन कत्थई रंग के दिख रहे जिसके ऊपर कुछ बना हुआ भी दिख रहा है | पहाड़ के ऊपर सफेद ते काले रंग के बादल भी बड़े खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं।

ईट के अंदर पत्थर का बना हुआ एक भवन दिख रहा है जिसकी पत्थर की भवन दिख रही है और काले पत्थर का बना हुआ दिख रहा है और इसके ऊपर पेड़ से टंगे हुए हरे रंग के पतिया दिख रही है जो इस प --

इसके छत पर भी लंबे-लंबे से लाइन बनी हुई उसके पास में कुछ लोग कुर्सी में बैठे हुए बैग भी दिखाई दे रहा है कुछ लाइटें भी छत पर लगी हुई कितनी बड़ी खूबसूरत दिख रही।

यह कुछ पैडों की लाइन कतार जैसी बनी हुई दिखाई दे रही है आसमान काला सफेद थोड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है ।